आस पास और भी घर है छोटे छोटे और नीचे कुछ गमलो में पौधे नजर आ रहे है।

बहोत ही सुंदर सी डेकोरेशन की हुई दिख रही है जहां पे कलरफुल बलूंस ऊपर लगाए गए हैं दो बच्चे यहां पर

यह एक जिम है जहां पे हमें एक व्यक्ति एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं।

सामने हमें बुक स्टॉल दिख रही है।

लगी हुई दिख रही हैं अंदर बहुत ही सुंदर नजारा है।

यहां पर हमें एक बहुत ही बड़ा सा खाली मैदान दिख रहा है।

और और सारे पौधे तो है ही बड़ेबड़े।

उतरे हुए नजर आ रहे हैं इस पानी में आप देख सकते है बहोत सारे लोग हैं और ये लोग--

और अंदर का हमें बहोत ही ज्यादा डिजाइनर ड्रेस दिख रहा है जो की बड़ी सी मॉल में--

यहां पे एक ए_सी भी लगाई गई है।